यहां पर बहोत सारे गमले भी रखे हुए दिखाई--

दिखाई दे रही है बिल्डिंग बदी दिखाई दे रही है यहां पर झूमर भी लगा हुआ दिखाइ दे रहा है यहां पर बहोत सारी लाइटिंग भी की हुई दिखाई --

दे रहा है यहां पर पर्दे भी लगे हुए दिखाई--

टी_वी लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर एक भी मेज लगी हुई दिखाई दे रही है यहां पर बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई दिखाई--

सामने एक शॉप दिखाई दे रही है शॉप में बहोत सारे रैक लगे हुए दिखाई दे रहे है यहां पर एक फरीज भी दिखाई दे रहा--